और घर भी नजर आ रहे हैं।

यहाँ पे पूरा हरा-हरा काई जैसा जमा हुआ है।

लाइट्स भी ऑन हैं।

इलेक्ट्रॉनिक है ये सब --

यहाँ पे बहुत पेड़ है जिसपे लोग --

और व्हाइट कलर के खम्बे गड़े हुए है।